एक श्री सिद्धि वाटिका गार्डन दिखाई दे रहा है।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

एक पानी से भरा हुआ सड़क दिखाई से रहा हैं गाड़ी दिखाई दे रहा हैं कुछ लोग दिखाई दे रहा है सड़क किनारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे है पेड़ पौधें दिखाई दे रहा है।

दोनो तरफ बाउंड्री दिखाई दे रहे है।